एक ग्रीन कलर का आटो दिखाई दे रहा है आटो के साइड में दो--

एक बड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है।

एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक मंच बना है मंच के सामने पब्लिक इकट्ठी है।

इस पत्र के अंदर दो लड़के खड़े हैं।

इस चित्र में मुझे शोरूम दिख रहा है।

इस में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

लोग गाड़ी चलाकर आ रहे हैं एक ऑटो खड़ा हुआ है।

स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और बाहर की दीवाल वाइट कलर से पुती हुई है।

उस मैदान में बच्चे खेल रहे हैं।

क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं और बोर्ड --

यह लाइटों से सजा हुआ है और--

बड़े बच्चों के भी कपड़े टंगे हुए हैं।

एक शॉप नज़र आ रही है शॉप --

और कुछ पेड़े भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे खुला आसमान दिखाई दे रहा है खुले आसमान के --

इस चित्र में मुझे मंच दिखाई दे रहा है एक हाल दिखाई दे रहा है जो --

भवन है यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुछ गीत गा रही हैं और कुछ लोग --

इस छत पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

और सामने भी कुछ मकान बने हैं।

एक लड़का काइट कार के साइट में बैठा है बाल्टी लेकर --

इस चित्र में मुझे एक बैंक दिखाई दे रही है।